और उस साइड हरी-हरी घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है बहोत सारा अच्छे दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत ही सारा मैदान भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत ही अच्छी पेड़-पौधे भी हरी-हरी दिखाई दे रही है वह बहोत ही अच्छा लग रहा है।